यहाँ पे हम देख पा रहे है की ये किताब कॉपी का दुकान है और यहाँ पे एक आदमी है जो की हाथ जोकर जोड़कर खड़ा है और नीचे बहुत सारा भगवान जी का मूर्ति है।

फ़ोटो है जिसमें माला चढ़ाया हुआ है पूजा कर रहा है थाली है कटोरा है गिलास है और एक लोटा है जिससे अ दीपक है अगरबत्ती ई सब सारा चीज है बुक्स है।

और कापी है कलम है और ये कैलंडर भी टांगा गया है लाइट्स जल रहे है बगल मे भी दुकान है और इधर भी दुकान है।

कुछ लोग हैं जो की अंदर बैठ रहे है बस क अंदर और इधर चिधर कुछ लोग हैं जो की चल रहे रोड पे और एक आदमी है की ये हाथ में झोला लिए बैग लिए हुए चढ़ रहा है ऊपर आसमान है।